यहाँ पर स्टेज भी दिख रही है जैसे खुर्सी भी दिख रही है और पर्दे भी दिख रहे है फूल फुलवारी भी दिख रही है ऐसे जैसे जयमाला कार्यक्रम हो रहा हो।

यहाँ पर एक होटल दिखाई दे रही है जिस पर लिखा है होटल इंडिया --

यहाँ पर होटल बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर लाईट भी दिखाई दे रही है। एसी भी दिखाई दे रही है। फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक डेरी दिखाई दे रही है जिस पर अलंकार डेरी फार्म लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो एक आदमी भी खड़ा हुआ है। बाइक भी खड़ी हुई है यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है दिखने में।

ये दूध ले रखा खड़ा हुआ है यहाँ पर लाईट भी दिखाई दे रही है और बैनर भी दिखाई दे रहा है ये दिखने मे बहोत अच्छा लग रहा है टाइल्स भी दिखाई दे रही है।

यहाँ के पेड़-पौधे बहोत हरे-भरे दिख रहें हैं और बादल भी दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर बहोत सारा मैदान भी दिखाई दे रहा हैं।